पौधा लगात हे देखता तुही मने अम बगाचे मन बड़का बड़का हैं। और ढेर भारी--

ये ब्यूटी पार्लर के एकठन छोरी मन पन चेहरा के साफ करे के लावे केस खटक लावे और--